यहां एक खेल के पार्क है।

कंकाल के आसपास बहुत सारी मशीनें रखी हैं।

एक आदमी गुफा के अंदर जा रहा है।

लाल रंग की जमीन पर कारपेट बिछी हुई हैं।

यह एक फूलों का बागीचा है।

पांच बॉक्स दप्ति के रखे हुए हैं।

दो लाइटे लगी हुई हैं।

सामने पेड़ की टहनी दिख रही है।

सामने बोर्ड पे मारुति सुजुकी लिखा हुआ है।

सामने सीढ़ियां बनी हुई हैं।

सामने दो कांच की खिड़कियां दिख रही हैं।

यह एक जनरल स्टोअर की दुकान है।

साइड में एक टीन पड़ी हुई है।

सामने माइक पे एक आदमी बोल रहा है।

सामने पानी के फव्वारे दो लाइटें दिख रही हैं।

पार्क की जमीन पे हरे रंग की घास उगी है।

जिसकी छत व्हाइट कलर की और ढेर सारी लाइटें लगी है।

हरे रंग का झंडा और तलवार दो है।

ऑटो वाला कार वाला और बाइक वाला एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं।

जमीन ती टाइल्स और सिरमिट से बनी हुई--

टेबल के ऊपर प्लेट में भोजन रखा हुआ है।

एक में दाल दो में सब्जी और सैलेड चावल रखा हुआ है।

सामने सीढ़ी पे रेलिंग लगी और एक आदमी लाल शर्ट और क्रीम कलर की पैंट पहने खड़ा है।

जिसमें ढ़ेर सारी खिड़कियां और एक गुंबज खड़ा हुआ है।